इस फोटो में मुझे कुछ बॉटल दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे एक और सजावट दिखाई दे रही है।